बहुत अच्छा मंदिर लग रहा है पता नहीं --

सहज जन सेवा केंद्र सी.एस.सी. ये कहाँ पर --

ये मतलब नाव पे एक दो लड़की है। लगता है नाव पे जा रही है कहीं घूमने।

लग तो ऐसे ही रहा है भाई लेकिन यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है मस्त लग रहा है इस पे जो भी मस्त लग रहा होगा।

भारतीय स्टेट बैंक अड़ड़ियां पता नहीं जा के देख लेंगे अड़ड़ियां ।

टेक्टर है। दो तीन आदमी लग रहा है खुदाई चल रहा है।

गाडी लग रहा है यहाँ पे भीड़ लगता है कोई --

मस्त लग रहा है यार ये कहाँ पर होगा पता नाय।

ट्वाय शॉप है। हाँ ट्वाय शॉप है। इधर तो वनली सिर्फ गुड़ियां है।

और एकदम सन्नाटा लग रहा है नया लग रहा है ये बहुत दूर का ये पेट्रोल पंप ।

फाइनेंस महिंद्रा फाइनेंस है मस्त लग रहा है यार मार्केट है।

यहाँ लगता है भीड़-वीड़ नहीं है बिल्डिंग सब यार पीछे में बिल्डिंग सब बड़ा-बड़ा है बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग सब है। .

कोई लगता है नर्सरी होम है।

यार ये लोग रखता है कोई चीज का पेकिंग वेकिंग कर रहे होंगे।

डांस भी करते होंगे यहाँ पे मस्त थॅंक यू --

बहुत ही मस्त लग रहा है।